काफी सारे बैलून हैं।

एक सैलून का दुकान है।

इस तस्वीर में--

कुछ है जिसके बाहर कु--

वाइट कलर का और ए--

और देख रहे हैं इनको--

एंड वाइट कलर काबैलून लगा--

इस तस्वीर में एकमैदान है जहां परकुछ पेड़-पौधे हैं।

कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं।

इस तस्वीरमें एक दुकान है।

खड़े हैं दुकान का नाम--

इस तस्वीर में एक--

अंकल टेंपू कोपकड़--

फूल लगेहुए हैंऔर एक बहुत बड़ावाइट कलर काघर है।

बैंक के बाहर दोलोग हैं।

रूम का कलर ग्रीन है।

पेड़-पौधे हैं बहुत हीसुंदरनजारा है।

औरलाइट लगा है।

और जंजीर सेघिराहुआ है जिसका कलर ग्रीन है।

और ऊपर में घर हैऔरबोर्ड --

इस तस्वीर में एक स्विमिंग पूल है जहां पर कुछ चेयर्स --

ख़ूबसूरत दिख रहा है।

कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक डॉग चल रहा है और एक --

और एक वाइट कलर का लाइट लगा हुआ है और बहुत सारे भीर हैं यहां पर--

जहां पर माला मिल रहा है।

येलो कलर का बस खड़ा है रोड पर दुकान में--

वह कुछ आदमी हैं जो टहल रहे हैं।

और दो पोल नजर आ रहा है।

जो ब्लू एंड ब्लैक कलर का है और--

औरउसके बाहर काफी सुंदरगमला और--

कुछघर हैं औररोड परकुछ लोगखड़े हैं।

इस तस्वीर में एक घर है।

और एक आदमी गाड़ीचलारहा है जो झोलाटांगाहुआहै।

इस फोटो में ए--

बथल्ल का कुछ बनाया है।

फोटो में एक घर हैऔर उसके बाहरएक गाड़ी है।